और यहाँ पर बहोत से लोग घूम रहे हैं यहाँ पर ताज महल के सामने एक --

तो कोई तबला बजा रहा है यहाँ पर एक म्यूजिक का कार्यक्रम किया जा रहा है।

ये स्कूल बहोत ही प्रसिद्ध और बड़ा है।

महिलाओं के लिए व पुरुषों के लिए दोनों के लिए व्यवस्थाए उपलब्ध है यहाँ पर--

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जो की नगर पालिक निगम की है।

ये हॉल बहोत ही बड़ा और देखने में बहोत ही सुन्दर दिखाई देता है।